इधर कुछ नीला दिखाई दे रहे हैं एक सेल्फी ले रहा हैअच्छी लग रही है मूर्ती बस आ रहा है आदमी सब पेड़-पौधा है अच्छी लग रहे हैं ।

अदमी है अगल-बगल पेड़ है बहुत अच्छी लग रहे है रोड है ऊपर सब आदमी चल --

रंगा हुआ है मकान की वुड रखा हुआ है हर डिजाईन रखा हुआ है डिब्बा रखा हुआ है सब --